फोटो खींच रहा है। यह दृश्य बहोत अच्छा व--

छाता है और यहां पे पेड़ पौधे का एक बहुत ही अच्छा सा प्रयोग किया जा रहा है।

हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है जोकि बहोत ही अलग प्रदर्शित हो रहा है।

टप्पा टप्पा जैसे डिजाइन बना हुआ है।

औ यहां पे तीन बाइक या स्कूटी खड़ा हुआ है।

जो कि लाइटिंग पर निर्भर बहोत ही अच्छा दृश्य दिखा रहा है वह यहाँ पे काफी अंधेरा है जैसे कि ये लग रहा है कि कोई मॉल या --

यहां पे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा हुआ है जो बच्चे बहोत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं।

आने जाने में सुविधा प्रदान करता है।

और यहां पे दो महोतरमा दो चार कस्टमर दिख रहे हैं और उनके अच्छे साफ सफाई के साथ किसी भी--

यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहां पे कुछ पंखे व टेबल कुर्सिया रखे हुए हैं।

इसमें एक सिग्नल व बहोत से बाइक वगरह कार वगरह--

जो कि अमूल दूध के सप्लायर यहां पे--

यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक है यहां पे सभी प्रकार का छोटा बड़ा वार्ड को उद्योग या फिर किसी भी प्रकार का जाता है।

कपड़ा पहन के पेड़ के नीचे के छांव के--

कन्या पर लरके हुए है जोकि अ सुख से दिख रहे है।